एक स्टेज है जो काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

इस बुक स्टोर में दो आदमी बैठे हुए है।

यह एक माउंटेन है जो काफी बड़ा और काफी सुन्दर हैं।

और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं।

मैं इस घर के बाहर में एक रोड बना हुआ है।

इस रेस्टोरेंट मे बहुत सारी चेयर रखी हुई है।

यह एक दुकान है जो काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

और बहोत सारे बोरे रखे हुए हैं एक बहोत बड़ा घर है।

इस वाटर फॉल में बहोत सारे पत्थरे रखी हुई है।

यह एक दुकान है जो काफी बड़ा है।

इस दुकान में बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

बहोत सारी डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक आग की मसाल जलाई गई है जिसे देखने के लिए लोग आए हुए हैं ।

यह एक स्विमिंग पूल जो काफी बड़ा और काफी सुंदर दिखाई दे रही है।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

इस घर के अगल बगल में बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो काफी सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रोड है जो काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

बहुत सारे टेबल रखे गए हैं।

इस मॉल में बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं जो काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं।

यह एक क्लिनिक है जो काफी बड़ा और काफी सुंदर है।

इसी दुकान में बहुत सारी लाइटें लगी हुई है।